सीढ़ी लगी हुई है जो कि अ मैंहरून कलर की है।

यहाँ पर एक गुड़हेल का फूल लगा हुआ है जोकि पिंक कलर का है और यहाँ पर सफेद कलर की इमारतें खड़ीं है।

ऊपर लाइटे लगी हुई हैं व्हाइट सफेद कलर की।

और इनमे लगे हुए हैं और इसमे मिट्टी मे लगे हुए हैं जो मिट्टी इसकी भूरे रंग की है।

यहाँ पर कांच का शीशा लगा हुआ है। यहाँ की जों दीवार है वो सफेद कलर की है और यहाँ पर फोटो लिखा हुआ है जो नीले कलर का है।

जैसा कि मैं यहाँ देख प रही हूँ यहाँ कई प्रकार के डब्बे रक्खे हुए हैं जो काले ऑरेंज और लाल पीले लगे हुए हैं।